काफी ऊंची ऊंची यह जो बड़ी सी पहाड़ी दिख रही है नीचे से लेकड़ --

रेलवे ट्रैक की पटरी सामने ही हमें दिखाई दे रही है और--

रिपेयरिंग टूल्स नीचे पड़े हुए हैं और यहां एक और गाड़ी लगी हुई है।

ओपन बॉटल्स भी हमें दिख रही हैं चारों तरफ़ मेडिसिंस ही मेडी--

एक लड़की नीचे ही बिल्कुल बैठी हुई है और अपने पंखों को इतनी खूबसूरती से बिखेर रखा है कि--

तरफ बस कपड़े ही कपड़े साड़ियाॅं औड़ --

कुछ व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं हमें और चारों तरफ--

कपड़े सिलकर चारो तरफ रखे गए हैं औड़ यहां पे --

रखे हुए पानी की कुछ डब्बे और ऊपर हो--